और वो कुछ देखकर सीखने के प्रयत्न कर रही है।

ये कोई बाइक सर्विस सेंटर है जहाँ पे --

जिसमे पांच आदमी है। जो की टेबल के सामने बैठे हुए है। कोई मालाए रखी हुई है।

और दो आदमी खड़े हैं जो की किसी के बात सुन रहे हैं।

और तार ले जाकर अपने घर में जो वायरिंग होता है बल्ब - उलब जाता है वो सब यही पे मिलता है ।

यह एक स्टेशनरी का दुकान है यहाँ पे कॉपी कलम मिलता है।

ये फिटनेस जिम सेंटर है।